जिसमें केक को बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

इस चित्र में हमें कुछ इमारतें नजर आ रही है।

जिसकी ऊपर गुलाबी रंग का टेडी बियर पड़ा हुआ है।

जिसने बैंक का नाम बैंक ऑफ़ बड़ोदा लिखा नजर आ रहा है।

उस गेट के आस-पास बहोत सुन्दर कारीगरी की गई है।

दूर-दूर तक गाड़ियां खड़ी है।

उस आदमी ने अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया है।

और उस रेढ़ी के बगल में कुछ एक लोग खड़े हुए हैं।

इस पंप में दूर-दूर तक कोई भी कार या स्कूटर नजर नही आ रहा --

इस बिल्डिंग में मशीन के द्वारा --

इसमें सफदे गुलाबी पीले हर तरह के फूल हैं।

जिसमें बारिश की वजह से बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

सड़क के पास एक बोर्ड भी लगा है।

जिसमे खाने-पीने की सारी चीज उपलब्ध है।

यह एक मैरिज पैलेस की तस्वीर है।